मीडियम इन्टर मीडियम का यह स्कूल है जो झारू सिंह पाली सिंह के नाम से है।

बनाया गया है यहाँ पर एक आदमी है जो गुलाब का सेहरा बना कर बना कर और उसको--

खड़ा हुआ है और अगल बगल ढेर सारे बेल के और गेंडे (गेंदे) के फूल के माले हैं।

पौधे हैं और पेड़ हैं पौधे हैं | यहाँ पर बीके जाते हैं यहाँ पर लोग खरीदते हैं उनको जिनको गमला अपने घर में लगाना हो जो फूल के शौकीन हैं वहाँ पर हर तरह के फूल उपलब्ध होते हैं।

है और बना बना कर इसको टांगे गए हैं कुछ माले दुकान के अंदर हैं कुछ माले बाहर दुकान के टांगे गए हैं।

इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक बहोत बड़ा सा यह महल है यह पूरा ब्लैक कलर का है इसका पैंट वेंट खराब हो गया है इसपे खजूर की पेड़ भी उग चुकी है।